यहां पर मंदिर के सामने हरे भरे पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर सब्जी रखा हुआ है यहां पर चम्मच लगा हुआ है कटोरी में।

यहां पर साइकलिंग की मशीने लगी हुई है यहां पर पीले रंग से पुताई की गई है।